ये एक लाइब्रेरी है यहाँ पर काफी शांति हो यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे तरह तरह की बुक्स है जो आपको पढ़ने मे काफी ज़्यादा अ-- अच्छी होती हैं।

ये एक दुकान है जहाँ पर कॉपीस पेन पेंसिल्स की है और यहाँ पे लिखा हुआ है ई सी ई ई ई ई इजीनियरिग --

और ये न अल्हटह इसमें वन टू थ्री फोर फाइव फ्लोर है और फाइव भी विंडोज दिख रही है काफी ज्यादा अच्छा है और कोई --